इस तस्वीर में एक अ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक डाकघर की है जिसमें सफेद रंग का दरवाजा लगा हुआ है।

बहुत सारी कॉपी किताबें और अखबार रखे हुए हैं।

जिसने कपड़े पर बहुत सारी मछली रखी हुई हैं।

दो बच्चे झूले से आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ व्यक्ति बाइक से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

मस्जिद में एक कैमरा भी लगा हुआ है।

जिसमें दो तखत पड़े हुए हैं।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में दो बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

बिल्डिंग के पास में ही एक पार्क बना हुआ है।

तार भी है बिजली के और यहां पर घास भी बहुत लगी हुई है।

कमरे के दरवाजे के पास गमले में पौधे लगे हुए रखे हैं।

इस तस्वीर में शिक्षक और शिक्षिका दिखाई गई हैं।

दो लड़कियों ने दो चोटी बांध रखी हुई है।

व्यक्ति की शर्ट की जेब में पेन रखा हुआ है।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

इस तस्वीर में दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

एक पुरुष ने काले रंग की टी शर्ट तो दूसरे ने हरे रंग की टी शर्ट पेहन रखी है।

लड़कों ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हुए हैं पीछे एक पड़दा है।